पिक्चर्स है जो मोटीवेट करता है यहाँ पर पच्चीस से तीस स्टूडेंट एक साथ क्लास करता है बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है।

ये हमारे इलाका का एक दुकान है इस दुकान में कोल्ड ड्रिंकस आइसक्रीम पैकेजिंग खाना केक्स पेस्ट्रीस मिल जाता है।

ये हंस वाइट ब्लैक और ग्रे कलर का है इस हंस का कलर कांबिनेशन अनोखा है बहुत ही खूबसूरत है।

दस लोग काम करता है ये शोरूम बहुत ही बड़ा है इस शोरूम के अंदर का डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है इलाका का लोग यहां से सामान खरीदता है।

ये हमारे इलाका का स्कूल है यहां पर स्कूल का स्टूडेंट सब लोग सब बैठ के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना रहा है और टीचर सबको देख रहा है।

ए हमारे इलाका का एक टोटो का शो-रूम है ये शो-रूम बहुत ही बड़ा है इस शो-रूम के सामने हर वक़्त तीन से चार टोटो सजा कर रखा जाता है।

ए हमारे इलाका का एक सड़क है यहाँ पर सड़क के किनारे पे एक फुटपाथ भी है इलाका का लोग पैदल चलने के लिए फुटपाथ का यूज़ करता है।

ये हमारे इलाका का एक रूम है इस रूम के अंदर एक बेड है और एक सोफा है इस रूम को बैलूनों से बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा है।

यहां पर टूरिस्ट लोग नाव में फोटो खींचता है नाव से इलाका का परिभ्रमण करता है।

यहाँ पर नदी के पार को बहुत ही अच्छी से बंधाया गया है यहां पर इलाका का लोग नदी का पानी यूज करता है।

यहाँ पर ढ़ेर सारी कंपनीज का इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स मिल जाता है टी.वी. फ्रीज वाशिंग मशीन ।

मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ मिलता है यहाँ पर चार लोग काम करता है इलाका का लोग यहाँ से समान खरीदता है।

ए मंदिर कम से कम डेढ़ सौ साल पुराना है मंदिर के अंदर फ्लोर थोड़ा हिली हुई है दूर-दूर से लोग यहाँ पर पूजा देने के लिए आते है।

ये हमारे इलाका का एक कार सर्विस सेंटर है यहाँ पर वर्कर्स लोग बहुत अच्छे से कार का सर्विस करता है।

इस शो को अटेंड कर रहा है इस दुकान में बुक को बहुत अच्छे से सजाकर रखा गया है।